ऐ फल है बनाना है संतरे है।

हम फ्रूट को देख सकते है जिसे खाने से--

और ये पहाड़ बहुत बड़ा है भे ।

में देख सकते हैं कि ये कोई डीश हैजो --

ये कोई ए स्टेडियम का फोटो लगता है ।

एक रेड कारपेट है ये कोई शायद फंक्शन का पिक --

और यहाँ पर बहुत गहरी और साफ़ सुथरी-- .